यह एक मकान है जिसके सामने कई बाइके खड़ी हैं और स्कूटी खड़ी है और एक व्यक्ति अन्दर जा रहा है और एक व्यक्ति गेट पर खड़ा है और अन्दर भी कई व्यक्ति हैं और पेड़ भी खड़े हुए हैं।